ये एक काउंटर है जहां पर सोनार की दुकान लग रही है।

जहाँ ऐसा लग रहा है कि नीचे बहोत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं।

पहली बिल्डिंग सफेद रंग की दूसरी लाल रंग की दिख रही है।

आसमान बिल्कुल साफ लग रहा हैं और यहां--

बाहर कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं और एक ऑटो खड़ा हुआ है।

और एक लड़का बैठा हुआ है जिसने लाल शर्ट पहनी है।

अ देखने में ये काफी पुराना ब्रिज लग रहा है।

नीचे पेड़ भी दिख रहे हैं और इस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के बा--

पीछे यहां पर मंदिर भी लगा है और ट्रिमर का तार हाथ तक आ रखा है।

जैसे यहां अंदर कोई नहीं बैठा बाहर बहुत सारे कूलर रखे हुए हैं।

पीछे की तरफ काफी सारे बेंच भी लगे हुए हैं।

यहां एक चर्च बना है और पास में एक पीले रंग का फोल्डर लगा हुआ है।

सब के आगे एक कंप्यूटर लगा हुआ है और काफी सुंदर लड़कियां भी हैं।

और नीचे नीले रंग की दिवाल है।

और देखने में लग रहा है कि यहां काफी सारा सामान रखा हुआ है।

ये किसी का घर लग रहा है जिस पर--

यह एक बारात का सीन है जहां पर--

देखने में यहां इंटरलाकिंग की सड़क भी दिख रही है।